सफेद कलर की बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं और व्हाइट कलर की बहुत सारी कुर्सियाँ इधर भी रखी हुई है और एक जाली वाला पुल यहाँ से दिख रहा है।

यहाँ पे बहोत से पेड़ भी नजर आ रहा है और एक घर भी दिख रहा है।

ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं और एक आंटी बुरखा ओढ़ कर खड़ी हुई है | उनके हाथ में थैली है व्हाइट कलर के पॉलीथिन है और उनके पास एक शूज भी पड़ा हुआ है और एक अंक अंकल ठेले पे कुछ एक खड़ा ठेला --

और एक अ मारुती व्हाइट कलर कि खड़ी हुई है और यहा से आसमान भी नजर आ रहा है और व्हाइट कलर कि और भी बिल्डिंगे दिख रही --

और एक कुण्डी रखी हुए है जो रेड कलर की है और उस पे ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए है पौध लगे हुए हैं। रेड कलर की कुण्डी है व्हाइट कलर के बिल्डिंग है और पेड़ भी नजर आ --